और एक बोर्ड भी रखा हुआ हैं जोकि ब्लैक कलर का बोर्ड है उसके बराबर में एक पेड़ भी है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है।

और लाइटे भी लगी हुई है चारों तरफ बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं छत भी अच्छी रखी है।

और चारों तरफ लाइट ही लाइट लगी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी--

यहाँ पर किसी छत पर काम कर रहा है कुछ मजदूर काम कर रहे हैं कुछ मजदूर बैठ कर देख रहे हैं।

छत भी धारी जा रही है जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है इससे बहुत अच्छी मजबूती भी हो जाती है जो की बहुत अच्छा लगा--

टेंट भी लगाया हुआ है पर्दे लगाए हुए हैं जिसमें लाइटें दिख रही है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

सामने की साइड में बहुत अच्छा प्रोग्राम भी किया हुआ है बहुत अच्छा लग भी रहा है तरफ पेड़ पौधे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और यहां पर बहोत अच्छी जिम है और यहां पर जिम करने से बहोत हि अच्छा बॉडी बन जाता है।

यह एक शीशे वाला होम है उसके सामने एक कार खड़ी हुई है बहुत ही अच्छी लग रही है।

घर बने हुए हैं पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं कुछ टेबले रखी हुई हैं कुछ मेज भी रखी हुई हैं।

ऊपर टंकी भी लगी हुई है नीचे बराबर में एक घर भी है जो बहोत ही अच्छा लग रहा है।

और एक चेयर रखी हुई है एक मेज भी रखी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है इसमें बहुत अच्छी लाइटें लगी हुई है।

उसके सामने बहुत अच्छे-अच्छे पहाड़ भी है इन पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।

और यहां पर एक कार दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही अच्छी कार लग रही है और उसके सामने से एक और स्विफ्ट कार आ रही है।

यह एक होम है यहाँ पर घर बनाने की तैयारी चल रही है कुछ ईटें पड़ी हुई हैं उसके पीछे--

ए_सी भी लगी हुई है और उसके भीतर जा के एक जो अलग से मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे जो अलग से मिलते हैं यहां पर।

अच्छी सोना मिल जाता है और यहां पर बहुत अच्छे डेकोरेशन की हुई है बाहर भी बहुत अच्छी लाइटें लगी हुई है और अंदर भी साइड में भी बहुत अच्छी लाइटें लगी हुई है जो देख --

यहां एक होटल है यहां पर चारों तरफ नीले कलर के सोफे लगे हुए है जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है।

और एक घर बनाया हुआ है जिसपे बहुत अच्छी खिड़की है चारों तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां लगी हुई है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।